यहां पर मुझे कुछ खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहुत सारे सोलर प्लेनेल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक किराने की दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे साईं दरबार मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे बहुत सारी अलमारी दिखाई दे रही है।